मंदिर के चारों ओर काफी हरियाली दर्शायी गई है| मंदिर के एक ओर एक बहुत बड़े पेड़ को देखा जा सकता है।

इस छवि में हमें एक बोहत ही प्राचीन मंदिर के बाहर का दृश्य दर्शाया गया है ।

जहाँ छत पर बने हुए लोहों को रस्सी से जोड़ कर कपड़ो को सुखाने का उपयोग किया गया है।